पानी में बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक बड़ा हाथी भी है।

व मस्जिद के सामने बहोत सारे वायर टंगे हुए दिखाई दे रहें हैं।